यह बहुत अच्छा कैफ़े है।

इस तस्वीर में देख रहें हैं कि बकरी घास चर रही है।

ये बड़ा सा बस स्टैंड है जिसमें एक बस खड़ा है। एक आदमी बैग ले के जा रहा है।

यह एक पेट्रोल पंप है । जहाँ पे एक ग्लैमर गाड़ी में एक आदमी पेट्रोल भरा रहा है ।

यह एक बहुत बड़ा घर है।

यह एक मछली मार्केट है जिसमें बहुत ही सारे मछलियाँ रखे हैं अनेक-अनेक प्रकार के --

जैसे कि बेबी जॉनसन पाउडर है पतंजलि का शैम्पू है और अन्य चीज है।